बैंक के सामने गाड़ियाँ रखी नज़र आ रही हैं।

और सामने से दो पार्क की हुई बाइक दिख रही हैं।

एक आदमी बाइक पर पेट्रोल भरवा रहा है।

यह गाड़ी पूरी तरह से खुली हुई मैदान पर रखी हुई दिख रही हैं। गाड़ी पर--

काले रंग के स्पीकर्स पर एक बैनर भी लगा हुआ है।

यहां टेबल पर खाने पीने का सामान सजा हुआ दिख रहा है।

जहां कार रिपेयर की पर्पस के लिए खोली गई है।

यहां नदी के किनारे तीन बोर्ड दिख रही हैं।

ऑफिस में आदमी लैपटॉप पर काम कर रहा है सामने दो खाली चेयर पड़ी हुई है।

कंप्यूटर के साथ कुछ रजिस्टर भी दिखाई दे रहे हैं दीवारों पर चित्र नजर आ रहे हैं।

यहां शादी के लिए सजा हुआ छोटा सा मंडप दिख रहा है।

सुखदेव पैलेस की बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है यहां अपडेशन दी हुई है होटल सुखदेव पैलेस की--

पौधे भी टेबल के आस पास नजर आ रहे हैं बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है।